वो लोग टोपी पहन के और बहुत सारे पिलर दिख रहा है लोहा का पिलर --

सारे लड़का लोगो को दिख रहा है और कुछ लोग यहाँ खड़ा है और एक लड़का ऊपर वाइट कलर का गमछा लेके ठीक है और बहोत सारे पेड़ दिख रहा है।